इसके सामने एक टेबल मे तीन परत रखे हुए हैं तीनों अलग-अलग साइज के हैं। एक बड़ा एक छोटा भी है।

दाएं तरफ मे कुछ आदमी खड़े हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं। कुछ नीले प्लास्टिक मे बैठे हुए हैं तो कुछ व्हाइट प्लास्टिक मे बैठे हुए हैं।